केमिस्ट्री लैब है इस कोचिंग है एस_बी_आई ऐ_टी_एम बैंक है।

यहां पे बहुत सारे आइटम सेल लगे हुए हैं।

यहां पे दो तीन स्टाफ हैं एक मैनेजर है दो सेल्समैन है।

सब करना है वगैरह वगैरह।

और एक आदमी है और अंदर में लग रहा है कि कुछ किसी चीज़ का दुकान है जिसमें बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं।

ये एक टैटू का शोरूम लग रहा है .

ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए --

जहाँ पे दिख रहा है केला दिख रहा है तरबूज दिख रहा है।

अनानस है प्याज है आलू है--

थर्टी परसेंट डिस्काउंट लिखा हुआ है ये फ्री में होम डिलीवरी भी--

गार्डेन में बहुत सारे फ-फूल पेड़-पौधे रोपे हुए--

आइ_आइ_टी जे_इ_इ मेंस नीट का तैयारी तेजस बहुत सारे ये यहाँ पे दुकान है ये लग रहा है कि रोड --

यहां पे बहुत सारे नट दिखाई दे रहे हैं।

एक नीचे की तरफ है एक ऊपर--

यहाँ पे एक मछली का दुकान है।

एक दुकानदार है जिसको मछली को काट रही है तीन चार कस्टमर हैं जो ले रही है सामान को।

यहां पे बहुत सारे साफ सुथरे चीज दिख रहे हैं।

लग रहा है कि यहां पे कोई बहुत बड़ा आरती हो रहा--

से देखने बहोत सारे आदमी आए हुए हैं।

ये देखने बहुत काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं।

दीवाल पे कुछ कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं।

जहां पे एक बड़ा सिलेंडर लग रहा है एक और सिलेंडर है।

जहां पे छह सात लड़कियां बैठी हुई हैं योगासन में।

और यहां पे एक साउंड बॉक्स भी लगा हुआ--